बहुत सारे यहाँ पर सब लोहे की सामान है यहाँ पर बहुत से लड़के जिम बनाकर अपनी बॉडी बनाते हैं ।

तालाब है। ये तालाब काफी बड़ी है। इस तालाब में बहुत सारे कमल फूल खिले हुए है। ये तालाब में बहुत सारे छोटे-छोटे एवम बड़े-बड़े मछलिया भी यहाँ इस तालाब में है। इस तालाब में बहुत सारे आदमी नहाने के लिए आते है।

पर कोई फंक्शन है यहाँ पर बहुत सारे टेबल कुर्सी लगे हैं यह टेबल पर पर्दे बिछाये हैं।

खपड़े की घर है यह खपड़े की घर में कोठा पिट रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बढ़ई हैं जो की यह को कोठा पिटते हुए नजर आ रहे --